जहां बहुत सारे चेयर्स लगे हुएं नजर आ रहें हैं।

और यहां पे कार है एक मारुति की दूसरी भी मारुति की ही है।

फोटो खींचने का काम कर रहा है इस पिक्चर में हम देखकर ऐसा--

अं की यह अं ये एक पहाड़ी छेत्र में लड़का और लड़की के हैं जो पहाड़ों के बीच मे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं।

बूंदी वाले ड्रेस में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के यहां पे लड़कियां सामान खरीदने आई हुई नजर आ रही हैं मैं जैसा देख सकता हूं इस पिक्चर में।

यह जो पिक्चर है एक पवन पंखे की पिक्चर लग रही है।

पार्क की पिक्चर है जहाँ पार्क में बहोत सारे--

ये जो पिक्चर है एक जंगल की पिक्चर है जहां जंगल के अंदर एक लड़के ने--

और मैं देख चुका हूं लड़के ने हाथ में छोटे से फूल को लेकर--

और ये जो फूल है काफी ही व्हाइट रंग का फूल दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में।